पास आने ही वाले हैं और बीच में यहां काफी लोग बैठे हुए हैं।

दूसरी लाल ऊपर पीछे कुर्सियां भी लगी हुई है एक पर्दा लगा दिख रहा है।

यह एक ऑटो वाला पर खड़ा हुआ देख रहा है।

एक बैटरी की दुकान पे अंकल बैठे हुए हैं वो दुकान में कांच का गेट लगा हुआ है एक घड़ी निकली हुई है और इंटर लॉकिंग की सड़क हुई है।

टेंट वोन्ट लगा हुआ है पीछे लड़ियां भी लगी हुई हैं।

यह एक मॉल लग रहा है जैसा कि इसमें बहोत सारी लाइटें --

और एक आलमारी भी है जिसमें लोग अपना सामान रख सकते है और--

यार अभी कितना करवाओ गे अरे यार ये--

सिस्टम बेकार लग रहा है यहां एक मटका भी रखा हुआ है घर टूटा फूटा है।